सब बड़े-बड़े जगहों पे जाकर डांस करते हैं और गाना गाते हैं।

यह एक फैक्ट्री है यह फैक्ट्री काफी बड़ा है।

और यह सड़क पर अभी एक ऑटो खड़ी है और बाइक वाले --

आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं ।

यहाँ पर एक नाई होता है जो काफी अच्छी बाल काटते हैं लोग यहाँ बात दाढ़ी --

यह मंदिर में बहुत सारे भक्तजनो लोग आए हुए हैं।